यहाँ एक रेल की पटरी बनी हुई है जिसमें बहुत सारी गिट्टियाँ पड़ी हुई हैं और रेल की पटरी ब्राउन कलर की है सामने एक बहुत बड़ी मकान बना हुआ है जिसमें दो ब्लैक कलर की टंकी रखी हुई है एक खम्भा लगा हुआ है जिसमें लाइट लगी हुई --

ये बिल्डिंग बनी हुई है बिल्डिंग में एक बैंक बना हुआ है काफी सारी दुकाने बनी हुई है बैंक बंद है ब्राउन कलर की शटर लगी हुई है दो ताले डले हुए है और यहाँ पर रोड में बहुत सारे ईटे पड़े हुए है गी --